यहाँ पर एक कपड़े की दुकान है जहाँ पर एक साड़ी फैला कर रखी गयी है साड़ी का रंग नीले कलर का है और इस पर बहोत अच्छी सुन्दर सी प्रिंटिंग हो रखी है।

कार के शोरूम की तस्वीर है जहाँ पे अभी बहोत सारे बास लगाए गए है जहाँ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है।

यहाँ पे तीन चार और लोहे के रखे गए है यहाँ पे पीछे घर भी बना हुआ है घर दो मंजिला है।

यहाँ एक पेट्रोल पंप है जहाँ पे एक ऑफिस भी बना हुआ है जो ऑफिस में गेट लगा है वह कांच का है।